जिसमें एक ब्लैक कलर की बुल्लेट भी दिखाई दे रही है।

और उसके सामने पीली कलर की डिवाइडर पीली और ब्लैक कलर की बनी हुई है।

बीच में वाइट कलर की दिख रही है।

चित्र में एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक बड़ी सी गौशाला दिखाई दे रही है।

रोड बने हुए है उस रोड के किनारे किनारे पौधे लगे हुए हैं।

शापिंग मॉल बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

गोल्डन कलर का गेट बना हुआ है।